इस चित्र में एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है।

और बहुत सारे फूल भी है।

और ये बहोत ही अच्छे अच्छे पेड़ भी लगे हुए हैं मौसम बहोत ही अच्छा हो रहा है।

और बहुत ही सारी पेड़ भी लगे हुए हैं और एक डिश लगी हुई है।

एक दुकान में वॉश बेसन रखी हुई है और एक दुकान में टॉयलेट रखी हुई है।

मौसम बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे पेड़ भी है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जिसमें एक रेल है।

और एक आदमी पानी भर रहा है।

यहां बहुत सारी दुकान हैं और बहुत ही सारे आदमी हैं।

इसमें ब तीन आदमी बैठे हुए हैं।

और एक भी रखी हुई है।

और बहुत सारे आदमी भी है।

और बहुत ही सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

और एक टेबल भी रखा हुआ है।

और एक बोर्ड है और इस एक कांच वाला गेट भी है।

जिसके पास एक गेट लगा हुआ है।

और बहुत ही सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और इसमें बहुत सारी चेयर भी रखी हुई हैं।

यह एक गोदाम है इस गोदाम में एक टीन पड़ी हुई है।

और बहुत ही सारी गाय बंधी हुई है।

यह एक रूम है जिसमें बहुत सारी लाइट लगा रखी है।

एक टेबल है और एक आदमी है।